ये घर का चित्र है वहां जहां पे बाइक सारी लगी हुई है यहां पे घर है ऊपर में छया हुआ है नीचे में--

नेकलेस वगैरह है दुकान का चित्र है यहां पे बेंगल वगैरह भी है चूड़ी--

और यहां पे बहुत सारे पराचून परचून का सामान भी है।

और हरे-हरे पेड़ पौधे भी यहां पे लगे हुए हैं।

ये घर का चित्र है यहां पे एक जेन्स बैठे हुए हैं एक बाइक छोटा सा स्कूटी लगा हुआ है।

एस-बी-आई बैंक का ए-टी-एम मशीन है जहां से लोग पैसे निकाल रहे हैं।

और हरी हरी पत्तियां भी है और बहुत सारे फ्लावर भी लगे हुए बगीचे का चित्र है।

पर्दा है पर्दे पर कलर किया हुआ है पेंटिंग बनाया हुआ है।

ये कोई स्मारक है और नीचे में पानी है गंगा या गंगा जी होंगे या नदी होगा--

ये बच्चों को पढ़ने वाला स्कूल का चित्र है चैनल गेट है यहां पर लेडीज और जेन्--

ये रोड है रोड पे बच्चे खेल रहे हैं यहां पर पेड़-पौधे हैं झूले वगैरह भी हैं।

और डब्बा जैसा सजा हुआ है और देख रहे हैं बहुत सुंदर भी लग रहा है ये पार्क ।

रोड है रोड पर बहुत सारे फूल अ बी बेच रहे हैं लोग।

और देखने में सुंदर लग रहा है यहां पे एक जेन्स भी है।

यह रोड है रोड पर कोई कुछ दिखा रहा है लोगों को यहां पे--

ये ऑनलाइन का दुकान है यहां पर को बहुत सारे कुछ ऑनलाइन होते होंगे पैसा निकल निकलत निकलता भी होगा--

ये फील्ड है इससे लग रहा है खिलाड़ियों को खेलने वाला यह फील्ड है इसके साइड में बड़ा-बड़ा--

ये पार्क है पार्क में एक घर है एक क्या अ दो तीन ठो घर है।

एक तरफ का लाइन खाली एक लाइन में ट्रेन जा रही है .